यह एक स्कूल है। यह स्कूल बहुत ही बड़े हैं। यहाँ बहुत सारी बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। यह स्कूल की अपने बरांडे में खड़े दिखाई देते हैं और पैन्ट शर्ट टी-शर्ट पहने --

ये कोई गेस्ट हाउस है यह हाउस बहुत ही बड़े हैं बीच में एक रोड है इस रोड के दोनों साइड बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग हैं गेस्ट हाउस के सामने एक कार गाड़ी खड़ी है और बहुत सारे आदमी --

यह एक पहाड़ है यह पहाड़ बहुत ही बड़े है और पहाड़ के नीचे जंगल भी है ये जंगल बहुत अच्छा दिखता है यहाँ ये तार का पेड़ बहुत बड़ा है जो जंगल में पहाड़ से ऊँचा दिख --